बड़ा सा कांच लगा हुआ है।

ये एक जिम है जिसका नाम ए_के फिटनेस जिम है।

सामने कुछ मिट्टी पड़ी हुई है।

साइड में लोहे की जाली नजर आ रही है।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

यहां एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ हैं।

जो नीले कलर का है।

साइड में लकड़ी का बॉर्डर बना हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं।

और साइड में बड़े-बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं।

यहां ये बुक शेल्फ रखा हुआ है।

और उसमें कई सारी बुक्स नजर आ रही है।

यहाँ पर स्टील की रेलिंग लगी हुई है।

यहां पर टेबल रखी हुई है।

पीछे एक लोहे की रेलिंग नजर आ रही है।

उसमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

उसके आसपास लाल कलर की कुर्सिया रखी हुई हैं।

और सामने एक स्टील और कांच की रेलिंग नजर आ रही है।

और उस पर कई सारे फ्रेम लगे हुए हैं।

सामने दो लोहे के खंभे नजर आ रहे हैं।

साइड में एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है।

उन पर सफेद रंग की पुताई है।

सामने एक घड़ी नजर आ रही है।

और सामने पंखे भी लगे हुए हैं।

उसके साइड में एक ज्वेलरी शॉप है।

साइड में एक जग भी रखा हुआ है।

जो सफेद रंग का है।